ये जो है ये इबादत गाह है अ ये इंडियन इबादत गाह है ये--

और यहाँ पे लोग इबादत करते हैं और ये लड़का बैठा उसके आगे जो है वो इबादत कर रहा है अपने तरीके से--

कृष्णा सुपर आर्ट मार्केट है कि लग रही उसके अंदर ये शॉप है।

बहुत सारे गोश्त और साथ में सी फूड अवेलेबल है गोरमेट फूड मीट एंड सी फूड शॉप का नाम है।

और ये छोटे बच्चों की चीजों की दुकान है छोटी सी जो गली में बस लगाई हुई है पीछे दरख़त भी हैं।

स्कूल का एक रूम है उसका ऑडिटोरियम है जिसके अंदर चेयर्स पड़ी हुई है लेकिन स्टूडेंट यहां पे कोई भी नहीं है इस टाइम ये ऑडिटोरियम जो है वो बिल्कुल खाली है।

एक रोड है जिसके आसपास दरखत लगे हुए हैं और रोड के ऊपर से कोई गाड़ी वगैरह नहीं चल रही है।

गोरमेंट बिल्डिंग है यहाँ पे जहाँ पे एंट्रेंस में तो लोग एंटर हो रहे हैं काफी ज्यादा उसके बाहर गार्डन है गार्डन में दरख्त लगे हुए हैं और--

बड़े-बड़े कर्टंस उठाने वाली मशीन पड़ी हुई है सामने यह कोई जो है ये--